सामने दो लोग खड़े बानी बहुत सारे बड़े-बड़े खम्बे लगे बानी उपे लाइट लगे बानी एक टेंट बानी।

दुकान पे एक लड़का खड़े बानी उने काले रंग --

इ एक स्कूल बानी यहां पे कछु लइका खड़े बानी कछु बैठे बानी।

ये एक बिजली का खंभा लगे बानी।

पे सवारी बैठे जा सकती हा।

ई का रंग सफेद बानी।

ई में बहोत सारे लइका बैठे बानी।

उ पे कछु लिखे बानी।

ऊके पास में एक घर दिखे बानी।

पीछे एक बड़ा सा पेड़ बानी हरे रंग का।

यहां पे चार-पांच लयकी खड़ी बानी।

कछु बोटलें रखे बानी।

एक ऊपर से टोकरी वानी उ में फूल --

खिड़की बानी दरवाजा बानी ऊ के पास में सीढ़ी लगे बा --

ई एक बस स्टैंड बानी यहां पे दो बसे खड़े बानी ऊपर टी-शर्ट बानी कछु लोग बैठे बानी एक लड़का सोत बानी।

पर पाँच मुख शेर के बने --

खड़े बानी बहुत सारे ढोल बानी।

कछु लोग मंदिर में जात बानी।

इ बिल्डिंग का रंग लाल और सफेद --